ये एक भरत नाट्यम का डांस परफॉर्मेंस करने गए तो कुछ लड़कियां नीचे जा रही है स्टेज पे से --

ये एक विद्यालय है इसका नाम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक टु ।

ये डॉक्टर मनु सेठ का हाउस है।

हरे हरे पेड़ है गेट भी है।

उन में से एक आदमी नीचे की ओर जा रहा है .

यह शायद गुफा के अन्दर जा रहा है।

रात का समय है आजू बाजू हरे हरे पेड़ हैं।

यह एक स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल है .

बहुत बड़ा स्कूल लग रहा है .

कमरे में एक कुर्सी रखी है पिंक कलर की--

एक साइड में दरवाजा है उसपे ताला लगा है।

पेट की लग रही है देखने से .

एक स्ट्रेच परफॉर्मेंस जैसा --

बोर्ड पे लिखा है ये उसकी दुकान है।

अंदर कोई कुछ कुछ लोग अंदर जा रहा बाहर खड़े हैं एक आदमी अंदर जा रहा है।

इसकी दीवारें ब्लू है हल्की आसमानी सी और पट्टियां उसकी डार्क ब्लू होती है।

का कुछ बैनर्स लगे हुए हैं कुछ कॉफी वगैरह के हैं।

सभी तरह का खाना मिलता है यहां पर सी फूड्स पिज़्ज़ा आइसक्रीम --

सूखी फूखी घास पेड़ लगे हुए हैं पेड़ की परछाईं दिख रही है ट्रेन के ऊपर।

देखने से ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है पर ये पूल --

एरिया है जहां पे कुछ बॉल्स पून में जमी हुई रखे हुए हैं।

मंजिस जैसा लग रहा है ये ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही है।

आसमान बिल्कुल साफ है चमकती धूप है।

ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसका नाम --

मैदान पूरी हरी घास से ढकी हुई है खुली हुई है आसमान नीला --

नीचे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर खूब सारे पेड़ हैं पेड़ों के नीचे कार्स खड़ी हुई है।

प्लस पर सरिए कसे गए हैं इस पे अब लगेंगे --

खुली हुई हैं नीला आसमान हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सा--

साइड में पर्दों से सजावट की गई है झाला डाल के लाइटों की देखने में बहुत सुंदर ही लग रहा है।

ये एक क्लॉथ स्टोर है यहां पे हर तरह के मेंस वेयर मिलते हैं।

हर साइज में अवेलेबल है बाहर भी कुछ सी टी-शर्ट टंग रही है।

दुकान का शॉपकूबर बाहर देख रहा है।

और दुकान के कलर वर्ष कथई कलर के हैं।

स्टेशनरी शॉप है ये स्टेशनरी शॉप पे शॉप के ऊपर पेन दिखा रहा है एक--

देखने से एक पुरानी बिल्डिंग लग रही है ऊपर छत पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं बाहर की साइड --

टेबल पे चार से छह कुर्सी लगाई गई हैं।

वारखाना लग रहा है आजूबाजू बहुत सारे वर्कर खड़े हैं एक आदमी मशीन पर --

नर्सरी टू एट्‌ स्टैंडर्ड हर तरह क बच्चे ने--

टाइल्स की पट्टी है और टाइल्स के अंदर हल्का क्रेक सा कांच का दर्पण का सामान है।

आइसक्रीम्स के कुछ बैनर भी लगे हुए हैं।

कुछ लोग बहोत आइसक्रीम वगैरा खरीद रहे हैं हो सकता है यह आइसक्रीम शॉप हो--

वटा पार गए बच्चे पानी में स्वमिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे अपने के साथ खेल रहे हैं।

के लिए स्लाइडिंग लगी हुई है जंपिंग के लिए जंपिंग का लगा हुआ है।

खजूर के पेड़ लगे हुए हैं आजू बाजू बहुत अलग अलग पेड़ भी हैं बिल्डिंगस लगी है एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है एक व्हाइट बिल्डिंग है।

फंक्शन सा लग रहा है डेकोरेशन किया गया है।